बहुत से लोग चल रहे हैं।

पे लाइट जल रही है।

झांकी के चारों ओर लोग खड़े होकर इसे देख रहे हैं।

दो कप चाय रखी हुई है।

मोटरसाइकिल साइकिल खड़ी हुई है।

उसपे एक आदमी खड़ा हुआ है।

इसके सामने दु तीन लोग खड़े हुए हैं।

इसकी दीवाल पे एक ए_सी लगा हुआ है।

दीवाल पे पंखा लगा हुआ है।

दुकान में एक आदमी खड़ा हुआ है।

का एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक ग्लोब रखा हुआ है।

कांच के शीशे लगे हुए हैं।

सफेद कलर के पिलर खड़े हुए हैं।

और पंखे लगे हुए हैं।

जिसमें बहोत से पेड़ है।

गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है।

उसे लेने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं।

और दो कंबल रखे हुए है।

इसके पीछे दो तिरंगे लगे हुए हैं।

छत पे एक फैन लगा हुआ है।